ये किसी के बर्थडे पार्टी का हैं ब्लफ जल रहे हैं बैलूनस हैं इसमें काफी सारे फ़ोटो लगे हुए हैं।

ये बी एक होटेल है जिसमें मेजें रखे हुए कुर्सीयां हैं बैलून है और पता नहीं और फ्लोवेर्पोट्स रखे हुए हैं।